एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारा सामान भरा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें बुक दिखाई दे रही इसमें एक कुर्सी दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लैक और नीला दिखाई दे रहा है इसमें एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसने ब्लैक कलर का कैप लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।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

इसमे हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहा है इसमें सफेद कलर का बादल भी दिखाई दे रहा है।

यहा पे पुस्तक की दुकान दिखाई दे रही है जिसपे बोहत सारा सामान भरा दिखाई दे रहा इसमें बाइक दिखाई दे रही इसमें आइना दिखाई दे रहा है।

इसमें दिखाए दे रहा-- इसमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने व्हाइट कलर का कैप लगाया दिखाई दे रहा है इसमें मंदना बुक वर्ल्ड लिखा दिखाई दे रहा-- इसमें घड़ी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट रेड और नीला दिखाई दे रहा है हरे गुब्बारे दिखाई दे रहे है एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना दिखाई दे रहा है पीले कलर का दुप्पटा दिखाई दे रहा है। इसमे मस्जिद का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर रेड दिखाई दे रहा है जिसमें दरवाजा दिखाई दे रहा है इसमें खिड़की दिखाई दे रही है इसमें हरे कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है इसमें वाइट कलर का बादल दिखाई दे रहा है।